इस मंडी में शर्ट भी है।

तीन माली यहां पर बोटो को लगा रहे हैं और तैयार कर रहे--

तैयारी की गई हैं लोग भी यहां पर हैं।

ये फोटो एक ब्यूटी सैलून की फोटो हैं।

और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लेने आते हैं।

यहां पर स्कूल की सभी बुक्स मिलती हैं।

यहां पर बच्चे स्विमिंग सीखते हैं।

यहां पर एक सड़क के आगे--

इमारत बहोत ही ऊंचाई वाली है।

साइड पर हरे भरे वृक्ष हैं।

ये एक पिक्चर हेलीकॉप्टर की पिक्चर है।

जिसका नाम रॉयल इंफील्ड है।